इन चटानों के बीचों बीच से पानी भी बहता हुआ नजर आ रहा।

तथा इसके ऊपर एक पेड़ भी लगा हुआ है।

यह टंकिया प्लास्टो कंपनी की टंकिया है।

ठीक सामने मुझे इस तस्वीर पर एक स्टेशनरी की दुकान का--

इस जंगल के ठीक बीचो बीच एक पार्क भी बना हुआ है।

ठीक सामने मुझे इस तस्वीर पर--

झील बहती हुई नजर आ रही है।

ठीक सामने मुझे इस फोटो पर एक बड़ीसी हार्डवेयर शॉप नजर आ रही हैं।

बड़ा सा सरकारी स्कूल नजर आ--

मधु रेस्टोरेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है।

इस जिम पर मुझे बहोत सारी तरह तरह की एक्सरसाइज मशीने --

इस डैम के ठीक किनारे मुझे बड़े बड़े टापू भी बने हुए नजर आ रहे--

ठीक सामने मुझे इस तस्वीर पर--

सामने मुझे इस फोटो पर एक बड़ा सा ऑफिस नजर--

यह पेट्रोल पंप भरत पेट्रोलियम है।